स्प्रैडशीट्स में चार्ट्स प्रविष्ट करने पर लिबर ऑफिस कैल्क के इस स्पोकन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है
इस ट्यूटोरियल में हम निम्न सीखेंगे चार्ट्स को बनाना संपादन करना और फॉर्मेट करना
चार्ट्स का फिर से आकर बदलना और स्थानांतरण करना
यहाँ हम उबंटू लिनक्स वर्ज़न 1004 और लिबरऑफिस सूट वर्ज़न 334 का इस्तेमाल कर रहे हैं
अतः लिबरऑफिस कैल्क में विभिन्न प्रदर्शन ऑप्शन्स के बारे में सीखना शुरू करते हैं
पाठकों को सूचना व्यक्त करने के लिए चार्ट्स सशक्त तरीके हो सकते हैं
लिबर ऑफिस कैल्क आपके डेटा के लिए विभिन्न प्रकार के चार्ट्स फार्मेट्स प्रदान करता है
कैल्क का इस्तेमाल करके आप चार्ट्स को काफी हद तक कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं
अपनी पर्सनल फाइनेंस trackerओडीएस शीट खोलते हैं
और शीट में दर्ज सभी चीज़ों पर खर्च की गयी राशि को भरें
हम सेल जो ई3 से निर्दिष्ट है उस पर क्लिक करेंगे और राशि 6500 टाइप करेंगे
अब कॉलम में नीचे जाएँगे हम e4e5ई6 और ई7 से निर्दिष्ट सेल्स में राशि 1000625310 और 2700 क्रमशः टाइप करेंगे
अब शीट में दर्ज सभी चीज़ों के लिए पायी गयी राशि भरेंगे
अतः फ़3 से निर्दिष्ट सेल पर क्लिक करें और राशि 500 टाइप करें
अब इस कॉलम में नीचे जाएँ हम f4f5फ़6 और फ़7 से निर्दिष्ट सेल्स में राशि 1000625310 और 2700 क्रमशः टाइप करेंगे
सीखते हैं कि इस टेबल के लिए चार्ट कैसे बनाएँ
एक चार्ट बनाने के लिए सबसे पहले हमें चार्ट में सम्मिलित किये जाने वाले डेटा को चुनना होगा
अतः सेल स्न पर क्लिक करें और माउस बटन बिना छोड़ें कर्सर को आखिरी सेल तक ड्रैग करें जिसमें 700 है
अब मेन्यूबार में इंसर्ट ऑप्शन पर क्लिक करें और फिर चार्ट ऑप्शन पर क्लिक करें
आप देखते हैं कि डेट के साथ डिफ़ॉल्ट चार्ट वर्कशीट में सम्मिलित हो गया है
साथ ही चार्ट विजार्ड डायलॉग बॉक्स प्रदर्शित होता है
चार्ट विजार्ड प्रदर्शित करता है कि डिफ़ॉल्ट चार्ट चुनित है
यह डिफ़ॉल्ट चार्ट चार्ट विज़ार्ड में आप के द्वारा किये गये बदलावों को दर्शाने के लिए अपडेट करता है
चार्ट विजार्ड डायलॉग बॉक्स में तीन मुख्य भाग होते हैं चार्ट को बनाने में सम्मिलित निर्देश चार्ट के प्रकारों का चुनाव और चार्ट के प्रत्येक प्रकार के लिए ऑप्शन्स
3डी लूक ऑप्शन को चेक करके चार्ट प्रदर्शन को तीन डायमेंशन में भी प्रदर्शित कर सकते हैं
चलिए इन ऑप्शन्स की कोशिश करते हैं
हम चूसे आ चार्ट टाइप फील्ड के अंदर बार ऑप्शन पर क्लिक करेंगे
ध्यान दें कि नमूना चार्ट टेबल के डेटा को बार प्रारूप में प्रदर्शित करता है
उसी प्रकार से आप अन्य ऑप्शन्स जैसे पाइ एआरईए बबल पर क्लिक कर सकते हैं
और चूसे आ चार्ट टाइप फील्ड के अंदर भी कई अन्य ऑप्शन्स पर क्लिक कर सकते हैं और अपेक्षित चार्ट प्राप्त कर सकते हैं
स्टेप्स ऑप्शन के अंदर हमारे पास दाता रंगे नामक एक और ऑप्शन है
इस ऑप्शन का उपयोग करके आपको चार्ट में जितना डेटा प्रदर्शित करना है उसकी सीमा खुद से बदल सकते हैं
डेटा को बनाने का डिफ़ॉल्ट ऑप्शन दाता सीरीज इन कोलम्न्स है
हम तरीका बदल सकते हैं दाता सीरीज इन रॉस का उपयोग करने के बजाय हम डेटा को प्लॉट करना चाहते हैं
यह लाभदायक है यदि आप अपने डेटा को दर्शाने के लिए चार्ट की स्टाइल जैसे कि कोलम्न का इस्तेमाल करते हैं
अंततः आप चुन सकते हैं कि फर्स्ट रोव एएस लाबेल इस्तेमाल करना है या फर्स्ट कोलम्न एएस लाबेल या चार्ट के अक्ष पर लेबल्स के लिए दोनों
फिर दाता सीरीज इन कोलम्न में फिर से क्लिक करें
अब अपने नमूने चाट में यदि हम शीर्षक रिसीव्ड के अंदर का डेटा हटाना चाहते हैं हम यह सबसे पहले दाता रंगे फील्ड पर क्लिक करके कर सकते हैं
और फिर रैंज A1 इस टो F7 टो A1 इस टो D7 का सम्पादन करके कर सकते हैं
शीर्षक रिसीव्ड के अंदर के डेटा पर ध्यान दें यह चार्ट में अब नहीं प्रदर्शित है
अगला देखते हैं कि दाता सीरीज क्या करता है
ध्यान दें यहाँ 5 रोस हैं जो हमारी स्प्रैडशीट में डेटा की सभी रोस को प्रदर्शित कर रही हैं
एड और रिमूव बटन्स हमें चार्ट में डेटा जोड़ने और हटाने की अनुमति देंगे
यूपी और डाउन बटन्स का इस्तेमाल करके हम डेटा को फिर से क्रम बद्ध भी कर सकते हैं
अतः डेटा और उसको चार्ट में प्रदर्शित करने के तरीके को चुनने के बाद डायलॉग बॉक्स में फिनिश बटन पर क्लिक करें
आप देखते हैं कि चार्ट स्प्रैडशीट में प्रविष्ट हो गया है
स्प्रैडशीट में चार्ट्स प्रविष्ट करना सीखने के बाद हम अब सीखेंगे कि लिबरऑफिस कैल्क में चार्ट फ़ॉर्मेट कैसे करें
फॉर्मेट मेन्यू में फॉर्मेटिंग और चार्ट्स के दिखावट को ठीक करने के कई ऑप्शन्स होते हैं
स्प्रैडशीट में हमने जो चार्ट प्रविष्ट किया है उसे फ़ॉर्मेट करें
अतः चार्ट पर डबल क्लिक करें जिससे कि यह स्लेटी हाशिये से बंद हो जाय
यह प्रदर्शित करता है कि यह एडिट मोड में है
अब मुख्य मेन्यू में फॉर्मेट ऑप्शन पर क्लिक करें
आप देखते हैं कि ड्रॉप डाउन मेन्यू में कई सरे फॉर्मेटिंग ऑप्शन्स हैं जैसे फॉर्मेट सिलेक्शन पोजिशन एंड साइज अरेंजमेंट चार्ट वॉल चार्ट एआरईए और कई सारे
यह चार्ट के स्थापन पृष्ठभूमि और चार्ट के शीर्षक व्यवस्थित और फ़ॉर्मेट करने के लिए इस्तेमाल होते हैं
हम सबसे ज्यादा इस्तेमाल किये जाने वाले फ़ॉर्मेटिंग ऑप्शन्स के बारे में एक एक करके सीखेंगे
फॉर्मेट सिलेक्शन ऑप्शन शीर्षक चार्ट एआरईए के साथ एक डायलॉग बॉक्स खोलता है
ध्यान देंकि यहाँ पर तीन टैब्स हैं बॉर्डर्स एआरईए और ट्रांसपेरेंसी
डिफ़ॉल्ट रूप से बॉर्डर्स टैब चुनित है
चार्ट के बार्डर का स्टाइल और कलर बदलते हैं
यह करने के लिए स्टाइल फील्ड पर क्लिक करें और कंटीन्यूअस चुनें
फिर उसी प्रकार से कलर फील्ड में ग्रीन पर क्लिक करें
अब ओक बटन पर क्लिक करें
ध्यान दें कि चार्ट के बार्डर की स्टाइल और रंग तदनुसार बदलते हैं
टाइटल ऑप्शन चार्ट के शीर्षक और उसके अक्षों को फ़ॉर्मेट करता है
एक्सिस ऑप्शन जो चार्ट बनाती हैं उन लाइन्स को फ़ॉर्मेट करता है
साथ ही दोनों एक्स और य अक्षों पर दिख रहे टेक्स्ट के फॉन्ट को भी
इन सब ऑप्शन्स का बाद में खुद से अन्वेषण करें यह जानने के लिए कि यह सब क्या करते हैं
कैल्क चार्ट क्षेत्र की पृष्ठभूमि को बदलने के लिए भी ऑप्शन प्रदान करता है
चार्ट क्षेत्र मुख्य शीर्षक और की सहित चार्ट ग्राफिक के आस पास का क्षेत्र है
चार्ट क्षेत्र को फ़ॉर्मेट करने के लिए फॉर्मेट ऑप्शन पर क्लिक करें और चार्ट वॉल चुनें
आप देखते हैं कि चार्ट वॉल शीर्षक के साथ एक डायलॉग बॉक्स प्रदर्शित होता है
स्टाइल फील्ड कंटीन्यूअस दर्शाता है क्योंकि यह हमारा अंतिम चुनाव था
कलर फील्ड में रेड पर क्लिक करें
हम साइज़ को भी 020सीएम में बदल देंगे
अब ओक बटन पर क्लिक करें
आप देखते हैं कि चार्ट क्षेत्र का स्टाइल और रंग बदलता है
आगे हम सीखेंगे कि चार्ट में एलीमेंट्स का आकार फिर से कैसे बदलें और स्थानांतरित कैसे करें
एक चार्ट का आकार फिर से बदलने के लिए नमूने चार्ट पर क्लिक करें
आप देखते हैं कि चार्ट के किनारे हरे हैंडल्स दिखते हैं
चार्ट का आकार बढ़ाने या घटाने के लिए चार्ट के चार कोनों में एक मार्कर पर क्लिक और ड्रैग करें
चार्ट को स्थानांतरित करने के लिए पहले चार्ट पर क्लिक करें
अब कर्सर को चार्ट के ऊपर कहीं भी घुमाएँ
कर्सर हाथ में बदल जाता है
चार्ट पर क्लिक करें और इच्छित स्थान पर ले जाएँ
अब माउस का बटन छोड़ें
आपने चार्ट स्थानांतरित कर लिया
अगला हम सीखेंगे कि पोजिशन एंड साइज डायलॉग बॉक्स का इस्तेमाल करके चार्ट्स का आकर कैसे बदलें
फिर से चार्ट पर क्लिक करें
अब चार्ट पर दायाँ क्लिक करें और कॉन्टेक्स्ट मेन्यू से पोजिशन एंड साइज चुनें
पोजिशन एंड साइज डायलॉग प्रदर्शित होता है
इसमें कई सारे फील्ड्स होते हैं जो चार्ट के एक्स और य स्थानों को और साथ ही लम्बाई और चौड़ाई को निर्धारित कर सकते हैं
अपने चार्ट के लिए एक्स निर्देशांक को 100 और य निर्देशांक को 083 निर्धारित करें
ओक बटन पर क्लिक करें
हम देखते हैं कि चार्ट निर्धारित वैल्यूस अनुसार चार्ट क्षेत्र के अंदर ही अपना स्थापन करता है
इसी के साथ हम इस स्पोकन ट्यूटोरियल के समाप्ति की ओर आ गये हैं
संक्षेप में हमने सीखा कि कैसे चार्ट्स बनाएँ उनका सम्पादन और फ़ॉर्मेटिंग करें
हमने यह भी सीखा कि कैसे स्प्रैडशीट के अंदर चार्ट्स का आकार बदलें और स्थानांतरित करें
व्यापक नियत कार्य
अपनी स्प्रैडशीट practiceओडीएस खोलें
डेटा के लिए पाइ चार्ट प्रविष्ट करें
चार्ट का आकार बदलें और शीट के दायें कोने में स्थानांतरित करें
निम्न लिंक पर उपलब्ध विडियो देखें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
अधिक जानकारी के लिए कृपया contactspoken हाइफेन ट्यूटोरियल डॉट ओआरजी पर संपर्क करें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
इस मिशन पर अधिक जानकारी के लिए उपलब्ध लिंक पर संपर्क करें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
हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद